लैपटॉप को चार्ज लगाया--

टेबल के ऊपर एक पेपर भी--

इसके बाहर काफी व्हीकल्स खड़े हैं।

ये लोग ग्राउंड में नेट --

इसमें काफ़ी लोग--

मैं लेकर बैठा--

कोका कोला स्प्राइट भुजिया--

कुछ लोग भी बैठे हैं।

खेत की जमीन में नीचे उगी हुई है।

दूसरी वाइट तीसरी में ब्लू कलर दिखाई--

ये सारे लड़कियां लड़के--